इसके बाहर एक पेड़ है.

यहां चेयर टेबल है.

जहाँ बहुत सारे पत्थर है.

इसके सामने एक मैदान हे जहा बोहोत सारी घासे उगी हुई हे.

यहां उसके सामने एक बिल्डिंग है.

यह एक ग्राउंड है.

ये एक किचन स्टेशन है.

उसके ऊपर एक लोहा का कहाई हे.

और कुछ दिल स्टिकस पे जोड़े गए है.

यहाँ एक म-मैदान में ट- टे- जगह जगह टेबल कुर्सी रखी गयी है.

यहां बहुत सुंदर अ-झूमर लगाया गया है.

यहां बीच में दुर्गा मां की मूर्ति रखी गई है.

यहां अ-लाल कलर की अम्-कारपेट बीछाई हुई है.

ये एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग है.

यहां एक बिल्डिंग है.

महंट स्वीट्स कॉर्नर की स्टॉल अ दुकान है.

यहां अ-ऑटो के सामने बहुत सारे व्यक्ति बात कर रहे है.

यहां बहुत सारे व्यक्ति अ नास्ते कर रहे हैं.

एक अ व्यक्ति चेयर पे बैठा बैठा हुआ है ओ उनके हाथ में फ़ोन है.

लगाई गए हे सब स्टोल्स मे कुछ ना कुछ समान लगाया गया है.

हन तीनों में लगाया गया है.

यहां बोहोत सारी साइकिले रखी गई है.

यहाँ एक दीवाल पे अ पावदानी लटकाई गई हे.

सपोर्ट के लिए यहां एक दूसरी जोरी अ --

इसमें बहुत सारे कार है.

मैदान में बोहोत सारी घास उगी हुई है

यहां सब खिड़कियों से बहुत अच्छी रोशनी आ रही है.

यह एक टेबल है टेबल के ऊपर एक छो-बोहोत सारे छोटे छोटे डिब्बे है डिब्बे मे बोहोत सारे समान है.

बहुत बड़े-बड़े चक्के हैं इसके और सीट छोटा सा.

यह एक रूम की तस्वीर है सीलिंग पे एक पंखा है यहा--

पर्दे के ऊपर एक बल्ब हैं.

यहां दो दरवाजा है एक छोटा सा कपबर्ड है एक टेबल है एक चेय--

यहाँ बहोत सुन्दर सा डेकोर किया गया है.

यह एक मीटर का बोट है. यहां--

रेम में बहोत पानी है.

जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है.